टेबल के ऊपर कैलकुलेटर और कुछ चीजें रखी हुई हैं।

फ्लोर पर कार्पेट बिछी हुई है जिस पे रेड और व्हाइट कलर से पैटर्न बने हुए हैं।

हमारे सामने एक ग्राउंड हैं जिसमे पानी भरा हैं कुछ --

ऊपर एक लड़का व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट पहने खड़ा है सामने एक बिल्डिंग भी है जिसमें छोटी सी खिड़की है।

उनमें बहोत सारी चीजें भी रखी हुई है सीलिंग पर कुछ लाईट्स भी जल रही हैं।

फ्लोर पर और सीलिंग पर व्हाइट और ब्लू कलर किए गए हैं ऊपर फ्लोर में एक कैमरा भी लगा हुआ है वाइट कलर का--

जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं अभी दिन का समय है हमारे सामने एक बड़ा सा ब्रिज है।

ब्रिज के ऊपर बाउंड्रीज भी लगी हुई है बाउंड्रीज पर येलो कलर किया गया है नीचे पानी भी है।

सामने में एक लड़की व्हाइट की टॉप और ब्लू कलर की जीन्स पहने खड़ी है राय --

सीलिंग और दीवार पर वाइट कलर किया गया है सामने की तरफ एक वाइट कलर का फैन भी लगा हुआ है।

कोरनर्स पर कुछ पौधे लगे हुए हैं ग्राउन्ड पर बॉउन्ड्रीस भी की गई है।

हमारे सामने एक बिलडिंग है जिसके ऊपर दो बोर्ड लगी हुई है।

जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं अभी दिन का समय है।

हमारे सामने एक लड़का टीशर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहने खड़ा है यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर भी है।

एक बॉक्स रखा हुआ है मैदान में हरी हरी घास भी है कुछ दूर बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं।

जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं अभी रात का समय है।